दो बच्चियों ने आगे मोमबत्ती जलाकर पकड़ रखी है जो पूजा कर रही है उनके चेहरे मोमबत्ती के उजाले में दिख रहे हैं।

ये एक बड़ी सी नदी के पास से फोटो ली गई इसमें बहोत सारा पानी दिख रहा है।

ये जंगल की फोटो है जिसमें दो हिरन अपने आप ही चार चारा चर रहे हैं।